ऊपर किये हुए है हा हाथ से अपने पैरो को पकडे है सफ़ेद और हरे कलर की मेट पर लेटे नजर आ रहे हैं। एक आदमी के मुहँ के सामने माइक रखा हुआ है लाल पी --